गोतम बुद्ध की फोट तस्वीर है। इस तस्वीर में यह एक ही गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। यह मूर्ति --

होने वाली है। यस दोपहार का दृश्य है। जब ये मंडप लगाया गया है। इसके नीचे अभी खाली है। इसके नीचे मेट लगा रखी है।

मार्केट अभी पुरानी हो चुकी है यहाँ पर दुकान पुरानी-पुरानी नज़र आ रही है।

मम्मी एंड डैडस के नाम से है। शोरूम खोल रखा है। यहाँ पर बच्चो से रिलेटेड और बड़े --

इयां पर नए-नए प्रकार के डिज़ाइन --

सजा रखी है। रोटी वगैरह लगा रखी है। ऐसा लगता है यह पहले से बुक की गया हुआ है।

मस्जिद की है। मस्जिद के अन्दर का सीन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर एक --